how to close a budget पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे
इस tutorial को record करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ
इस tutorial का अनुकरण करने के लिए आपको library science का ज्ञान होना चाहिए
इस tutorial का अभ्यास करने के लिए आपके system पर koha संस्थापित होना चाहिए
और आपको koha में admin access भी होना चाहिए
अधिक जानकारी के लिए कृपया इस website पर koha spoken tutorial की श्रृंखला देखें
सीखते हैं कि budget कैसे बंद करना है
शुरू करने से पहले कृपया ध्यान दें: budget को बंद करना unreceived orders और
required unspent funds को
पुराने budget से नए budget में मूव करना होगा
पिछले budget से यानि
नया budget यानि
कृपया ध्यान दें
ऐसा करने के लिए पिछले budget की वही fund संरचना नए budget में मैजूद होनी चाहिए
budget बंद करने के लिए निम्नलिखित करें
koha home पेज पर acquisitions पर click करें
बाईं ओर के options से budgets पर click करें
budgets administration पेज पर active budgets टैब में संबंधित budget पर जाएँ
मेरे इसमेंspoken tutorial library 20162017 phase i है
actions टैब पर click करें और dropdown से close option चुनें
जब close चुना जाता है एक नया पेज खुलता है
यह प्रदर्शित करता हैthe unreceived orders from the following funds will be moved
उसी पेज पर हमारे पास select a budget है
dropdown से budget चुनें जिससे आप अपने unreceived orders को move कर सकते हैं
मैं spoken tutorial library 20172018 phase ii चुनुंगी
इससे हमें वहां unspent budget को move करने में मदद मिलेगी
अगला move remaining unspent funds है
इस पर क्लिक करने से unspent amounts नए budget में चला जाएगा
ऐसा करें यदि आप पिछले वर्ष के unspent amount को नए budget में जोड़ना चाहते हैं
सभी विवरण भरने के बाद पेज के नीचे move unreceived orders button पर click करें
निम्न message के साथ एक dialog box प्रदर्शित होता है:
you have chosen to move all unreceived orders from spoken tutorial library 20162017 phase i to spoken tutorial library 20172018 phase ii
this action cannot be reversed do you wish to continue
यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि एक बार पूरा हो जाने पर आप इस प्रक्रिया को पूर्ववत नहीं कर सकते हैं
dialog box में ok पर click करें
एक नया पेज खुलता है
यह पेज moved किए गए विवरण के साथ order numbers को प्रदर्शित करेगा
इसके साथ हमने वित्तीय वर्ष के budget को बंद कर दिया है
और अब हम अगले वर्ष के budget बनाने के लिए आगे बढ़ सकते हैं
इसी के साथ हम tutorial के अंत में पहुँचते हैं
संक्षेप में
नियतकार्य के रूप में
निम्नलिखित link पर video spoken tutorial project को सारांशित करता है कृपया इसे download करें और देखें
spoken tutorial project team: कार्यशालाएं आयोजित करता है और प्रमाण पत्र देता है
अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें लिखें
इस forum में समय के साथ अपने प्रश्नों को post करें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
यह स्क्रिप्ट विकास द्वारा अनुवादित है आई आई टी बॉम्बे से मैं ज्योति सोलंकी आपसे विदा लेती हूँ हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद